ये इमेज की ओर देखकर पता चलता है कि यह एक डिपार्टमेंटल स्टोर है यहां पर बहुत ही घर के खाने के समान दिखा रखा गया है।

बहुत ही कलरफुल और डिजाइन दिया गया है।

सामने में एक रास्ता है।

सामने में जेसीबी है और दो ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है।

गेट के सामने एक बंदा खड़ा हुआ है।

पीछे में स्कूल थोड़ा दिखाई दे रहा है।

झील का कलर ब्राऊन --

पर बहुत ही डिजाइन लगा हुआ है।

सामने में एक दो घास कच्ची हैं।

टेबल पर टिशू पेपर ग्लास और कुछ चीजे रखा गया है।

ये इमेज को देखकर ये पता चल रहा है कि ये एक दुकान है।

यानि बॉडी बनाने के लिए बंदा इस तरफ फेस करके है।

ये इमेज पे एक पोर्ट दिखाई दे रहा है बहुत ही सारा शिप खड़े हैं।

यहां पे बहोत सारा घर को पेन करने का सामान रखा हुआ है।

सामने में तीन चार इंसान भी दिखाई दे रहा है।

पे घास कच्ची भी है हरियाली भी है।